इसी तस्वीर में भी मुझे एक सुव्यवस्थित तरीके से सजावट किया हुआ का दुकान दिखाई दे रहा है इस दुकान के आस पास बहुत सारा --

पेड़ पौधा भी लगा हुआ है यहां पर इस दुकान के ऊपर ऊंट को भी चित्रित किया हुआ है।

जे सफेद रंग के लाल रंग के हरे रंग के गुब्बारे भी नजर आ रहे हैं।

बहुत ही अच्छी तस्वीर देखने को मिल रही है इस तस्वीर में मुझे बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है बड़ी संख्या में कुछ महिला है कुछ पुरुष है।

एक ऑफिस पर नोटिस बोर्ड भी लिखा हुआ है यहां बाहर मोटरसाइकिले भी पार्क की गई है सफेद कलर की हुई है फुटकर व्यापार अन्य एक दुकाने है।

छोटे बड़े पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं लाल रंग का फूल है बहुत ही सुंदर फूल है।

बहुत ही अच्छी तस्वीर है यहां पर सफेद कलर किया हुआ।

यहां पर मुझे एक बहुत ही अच्छी सुविधाएं देखने को मिल रही है बहुत ही अच्छी तस्वीर खींची गई है यहां पर।

इनके आस पास में पेड़ पौधे भी है छोटा छोटा घर भी है।

बहुत ही अच्छी प्रकार से शूटिंग की गई दृश्य है यहां पर मुझे--

पंखा भी चल रहा है ए_सी भी लगी हुई है बहुत सारे बच्चे बैठे हुए है पढ़ रहे है।